अच्छे से सीढ़ी बनाई गई है अच्छे डेकोरेट के साथ सूंदर सा मस्जिद बनाया गया है।

ये महावीर पीठ है और ये महावीर जी का ही मंदिर दिख रहा है महावीर जी का मूर्ति भी है।